देख सकते हैं कि हमें केला का पौधा भी पेड़ भी उग रहा है वहां पे।

हम इस तस्वीर में एक राइस होटल को देख सकते हैं जो बंद है फिलहाल।

ये किसी घर का काम करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं।

हम इस तस्वीर में देख सकते हैं की ढेर सारे आदमी बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं एक प्रोग्राम को।

इस बिल्डिंग में हम देख सकते हैं बरिस्ता का एक अं कैफ़े है।

अम् इस तस्वीर को देख के लगता है कि किसी बच्चे की तस्वीर है।